एक लाइन से रखा हुआ है उसके पीछे एक खम्बा नजर आ रहा है नीचे नीचे मिट्टी कलर का है नीचे कोइ पक्का नहीं है मिट्टी पे ही चारों रखे --

कैंटर मे ऑरेंज रखे हुआ है और दो तीन कैंटर मे दो तीन तरह के सेब रखे हुए है दो तरह के ऑरेंज रखे हुए है फिर एक मतलब मुरझाया हुआ केला रखा हुआ है सामने एक लाइट --

सामने से बिजली का खम्बा गया हुए है बिजली की लाइन गई हुई है बगल में बगल में बहुत सरे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा बिजली का तार है एक दूसरे से जो कनेक्टेड है।

अ ऊपर मे शीशा का खिड़की है विंडो शीशा का है ग्रिल भी शी ग्रिल भी लोहा का लगा हुआ है नीचे आ शटर लगा हुआ है और मैन गेट खुला हुआ है।

ये टेम्पल का तस्वीर है जो ऊपर मे बहुत सारे लाइटें जल रही है।

दोनों साइड मे उम्म फुले रखी हुई है नीचे मे लाइटें जल रही है सामने से भी रेड रेड कलर का फुल नजर आ रहा है ऊपर मे बहुत सारे लाइटें लगी हुई है झूमर लगा --

यहाँ पे अ जंगल यहाँ पे जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे काले-काले वृछ नजर आ रहे हैं नीचे में अंधेरा-अंधेरा टाइप सा नजर आ रहा है।

ये भी कोई मस्जिद का ही है मस्जिद की बहुत सारे मीनारे नजर आ रही हैं मस्जिद पे झंडा लगा हुआ है और मस्जिद के मीनारे पे जाने के लिए सीढ़ी बनाया हुआ है।